यहाँ पर एक फाल्कन दिखाई दे रहा है जोकि पानी के ऊपर बैठा हुआ है।

य अगल-बगल में बहोत सारे और भी मुर्तिया रखी हुई है। पीछे के तरफ दीवाल दिखाई दे रही है जो रेड कलर की है।

यहाँ पर बहोत सारे एक सोफा रखा हुआ है। सामने एक काउंटर जैसा बना हुआ है जिसके ऊपर एक ऊपर महिला बैठी हुई है।

व्यक्ति बैठे हुए है एक व्यक्ति ने सफ़ेद रंग की पूरी ड्रेसेस पेहन रखी है और वह नीचे बैठा हुआ है।

कुछ यहाँ पे स्कूटर खड़ी हुई हैं कुछ साईकले खड़ी हुई है यह देखने बहोत ही सुन्दर लग रहा है।

और यहाँ पर बहोत सारे--

यह एक जिम दिखाई दे रहा है जहाँ पे जिम करने बहोत सारे सामान को रखा गया हैं।

यह एक लाइब्रेरी का इमेज लग रहा है यहाँ पे बहोत सारी केबिन जैसे कुछ बनाये गए हैं यहाँ पे लोग आ कर के स्टडी करते हैं।

यहाँ से थोड़ी ही दुरी पे बहोत सारे मकानो को भी देखा जा सकता है। ऊपर नीला आकाश है।

कुछ टीशर्टओ को एक पे एक तय कर के रखा गया है।

ऊपर से लाइट की तारे जाती हुई दिखाई दे रही है।

मुर्गियों अ ब मुर्गियाँ सफ़ेद रंग की दिखाई दे रहीं हैं कुछ मुर्गियाँ लाल रंग की दिखाई दे रहीं हैं और कुछ काली दिखाई दे रहीं हैं।

अगल -बगल में और भी बहोत सारे दरवाजे ऐसे दिखाई दे रहे--